इस पार्क में शो प्लांट्स लगे हुए हैं यहां एक लड़का घूम रहा है इसमें --

एक बेड है उस बेड पर एक बैग रखा हुआ है बेड पर दो पीलो है।

इस इमेज में एक रेस्टोरेंट बना हुआ है बाहर बहोत सारे प्लांट लगे हुए हैं।

तस्वीर रखी हुई है पास में बहुत सारे--

यहां पर बाहर बाइक खड़ी हुई है एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दे रहा है।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

इस इमेज में एक स्टार हॉस्पिटल बना हुआ है जिसके बाहर एक बाइक खड़ी हुई है।

इस इमेज में एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसके बाहर एक सीढ़ी लगी हुई है उसके बाहर लाइट जल रही है।

इस इमेज में महाराजा अपार्टमेंट डी एक सौ पांच ए --

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं लाइट जल रही है।

इस इमेज में हीरो होंडा बाइक जोन की शॉप है जिसके बाहर बाइक खड़ी हुई है।

अंदर सामान रखा हुआ है बाहर एक कूलर रखा हुआ है।

जिसके बाहर लोग खड़े हुए हैं बाइक कार पार्क की हुई है।

झूमर लगी हुई है लाइट लगी हुई है एक खिलौना गाड़ी दिखाई दे रही है कुछ आदमी खड़े हुए हैं।